आसमान में बादल दिखाई दे रहे हैं।

कुछ कागज दिखाई दे रहा है।

अंदर काफी बक्से दिखाई दे रहे हैं।

जो टेज पर बैठी हुई दिखाई दे रही हैं।

काफी पेड़ पौधे भी दिखाई दे रहे हैं।

जिस पर टेटू लिखा हुआ दिखाई दे रहा है।

पुतले ने कपड़े पहने हुए दिखाई दे रहे हैं।

सामने एक दरवाजा दिखाई दे रहा है।